इस भवन में बहुत से कुर्सी लगी हुई हैं। यह कुर्सी लाइन बाय लाइन लगी हु --

लाल कलर से पेंट किया हुआ हैं इस स्टेशन के सामने एक फील्ड हैं । इस फील्ड में छोटी-छोटी अनेक गाड़ियाँ खडी हैं।

इस सड़क के बगल में एक बस खडी है । इस सड़क के किनारे बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं । इस --